और एक घर है जो येलो कलर से कलर किया गया है और साइड में एक पेड़ भी है।

छोटा सा लैब है तथा उसमें एक चेयर रखी गई है।

कोई जगह है जहां पे योग सिखा सिखने की मैट रखी गई है।

बहुत सारे पेड़ लगे हुए है जो गार्डन टाइप के बनाए गए हैं।

और सारे में व्हाइट कलर के लगे हुए हैं।

पाइप के थ्रू इसमें पानी दिया जा रहा है।

गार्डन में एक आदमी जो सीढ़ी पर चढ़कर टेंट को लग रहा है।

पीले कलर का बैनर लगा हुआ है।

घर के गेट पे एक ट्रैक्टर रखा हुआ है तथा एक बाइक भी है।

और पुश अप मारने के भी इसमें स्काई ब्लू कलर के नीचे से मैट बिछे हुए हैं ग्रीन कलर के भी मैट बिछे हुए हैं।

और व्हाइट व्हाइट कलर की भी लाइट्स लगी हुई हैं इसमें।

और जो होटल के आगे का है वो बेबी पिंक कलर से कलर किया गया अंदर की तरफ में--

ये कोई कॉलेज है जिसमें फंक्शन चल रहा है फंक्शन स्टार्ट नहीं हुआ जिसका नाम है ज्ञानदीप पब्लिक स्कूल ।

इसमें ठंडी के बहुत सारे जैकेट वगैरा बिक रहे।

इस में पीले पीले कलर की बत्तियां लगी हुई --

और बहोत सारे इसमें सामान रखे गए हैं कम कबड की तरह।